लेख है लेख में एक आदमी खड़ा है लेख का दृश्य उठाते हुए चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली भी दिखाई दे रही है।

बस स्टेशन बस स्टेशन में कुछ बसे खड़ी हुई हैं व कुछ व्यक्ति बस का इंतज़ार कर रहे हैं।

बुक सेंटर से किताबे ले रहे हैं।

एक सुंदर सा नजारा जहां चारों तरफ हरियाली है वह पहाड़ों के साथ एक सुंदर सा दृश्य है और नदी के साथ चारों ओर पेड़-पौधे हैं।